यह एक बॉल की दुकान का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है जिसपे डोरेमोन और शादी बॉल पे कई तरह की बॉलस दिखाई दे रही हैं।

जो बड़े-बड़े बॉल डमलर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं तथा यह डोरेमोन वाली बॉल के साथ-साथ डमलर भी यहाँ पर दिखाईं दे रहे हैं जो बॉक्सिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है।

तथा यहां पे लाइटिंग की पूर्ण संपूर्ण व्यवस्था की गई है तथा यहां पर कॉर्नर में एक चेयर रखी गई है जिस पर कुछ व्यक्तीगण बैठकर --

यह एक उपजाऊ जमीन के अंदर का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है। जहां पे सैंपल के द्वारा बीज दिए जा रहे हैं। तापे --

आ भीड़ दिखाई दे रही है तथा सड़क के एक तरफ कुछ कचरा जिससे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तथा बाकी जगह सड़क पर --

यह एक केक का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है जोकि दो फ्लोर में बनाया गया है। इसके ऊपर क्रीम के द्वारा --

घर के अंदर का एक सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है। जिसमें मेज टेबल रखी हुई है तथा मेज टेबल के रखे होने के साथ-साथ यहाँ पर --

यह एक शादी के अंदर का सामूहिक कार्यक्रम दिखाई दे रहा है तथा जिसके अंदर स्टेज के पास --

यह एक बरफ के रू बरफ वाले शहर में किए जाने वाली स्केटिंग है। इसमें सर्दी के कुछ विशेष कपड़े पहनकर ही व्यक्ति स्केटिंग कर सकता है।

था स्केटिंग करने के लिए बहुत सारी सावधानी किसी प्रकार का सब कुछ तरह का ज्ञान होना चाहिए।

ओला कैब की भी गाड़ी हो सकती है या ये किसी के घर के अंदर खड़ी हुई व्यवस्था भी दिखाई दे रही है।

यह इंजन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है यह व्यवस्थित रूप से गाड़ी सही चल रही है या नहीं चल रही है।

यह संगमरमर के पत्थरों के बीच खड़ी हुई एक शेर की प्रतिमा है एक मिट्टी की मूरत है जोकि बहोत सुंदर आकृति की वजह से बहोत सुंदर रूप में दिखाई दे रही है।

व्यक्ति अपना वजन बढ़ाना चाहता है --

यह एक ईस्टर्न चर्च का साम का एक सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है जोकि बदायूं में स्थित है तथा --

तथा इस दुकान में फेविकोल गम की सीसी पेंसिल बॉक्स और ड्राइंग कलर स्केच पेन और किताबें कॉपियां डिक्शनरी --

सभी प्रकार के सना समान प्राप्त किया जा सकते हैं घी पनीर --

दोनों तरीके से पूजा की व्यवस्था का निर्माण किया गया है। ये एक व्यवस्थित परनाली है तथा विभिन्न-विभिन्न देशो परदेशो में --

यह एक सड़क की प्रतिमा का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है तथा जिस पर मरम्मत का कार्य चल रहा है तथा जिस पर --

जो उसके सुंदर शोभा को बहोत सुंदर प्रतीत कराने में उसका साथ दे रहे हैं। एक व्यवस्थित कार्य पद्धति के अनुसार चलने वाला कार्यक्रम है।

एक बिकसित प्रणाली के अनुरूप चलता है तथा जिसका निर्माण व्यवस्थित --

दो पहियों वाले वाहन भी खड़े हुए हैं जो इसकी व्यवस्था के आधार पर खड़े हुए हैं।

यह एक बैंक के बाहर का सामान्य चित्रण दिखाई दे रहा है।

ये दिल्ली के अंदर स्थित की गई मेट्रो है जो इंदौर में भी चालू हो रही है।

खेती के ऊपर य्-ये इंश्योरेंस करने वाला काता भी है जिसमें किसानों के आधार पर इस खाते में --

हमे एक टावर का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है जोकि ये साल भर का टर्नओवर दिया जाता है।

यह टावर एक प्रोसेसर के रूप में रखा जाता है जो किसी भी एरिया को पूरी कनेक्टिविटी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करता है।

यह टावर एक व्यवस्थित आवरण के रूप में रखा जाता है जहां भी होता है वहां दूसरे एरिया के लोगों को टावर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है।